यूनिक बना हुआ है गेट में जो कलर हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा बहुत लुक में आ रहा है पर्पल कलर का गेट है।

और ये बहुत उसके वॉल पे जो कलर हो रहा है वो ब्लू स्काई ब्लू कलर वाला बहुत प्यारा और बहुत स्टाइलिश और यूनिक लग रहा है।

ये एक बहुत बड़ा-सा एक महल टाईप लग रहा है एक जयपुर की कोई महल लग रहा है ये बहुत बड़ा होटल जयपुर का लग रहा है।

ग्रीनरी बहुत अच्छी है बहुत अच्छे पेड़ बने हुए हैं और लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है।

सीएनजी चल रहा है बस के पास एक कार जा रही है और दो आदमी--

ये एक बहुत अच्छा व्यू आ रहा है ये सब तरफ बर्फ ही बर्फ है ये माउंटेन्स पे सारी बर्फ आई हुई है।

शोप से अपने गारमेंट्स खरीद के जाते हैं और इसके बाहर एक रोड़ चल रही है रोड़ पे एक--

अंकल एक साइकिल चला रहे हैं वो साइकिल के दो टायर्स हैं।

और बहुत सारी चीजें और सामान मिलती हैं क्योंकि इसे और बोर्ड पर क्लीयर क्लीयर लिखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ी-सी चण्डीगढ़ की कोई कम्पनी लग रही है ये कम्पनी बहुत बड़ी बनी हुई है।

ये एक बहुत बड़ा-सा एक हॉल बना हुआ है इस हॉल के बीच में बहुत सारे से--

ये गोल सर्किल करके एक बिल्डिंग बनी हुई है इस गोल सर्किल में अं-अं आई थिंक एक पेट्रोल डाला हुआ है बहुत सारा आई थिंक ये सारा पेट्रोल --

ये बुद्धा जी की फोटो बैठी हुई है और फाउंटेन पर लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही है।

इसमें लाइटिंग का कलर ऑरेंज और पर्पल कलर दिखाई दे रहा है अ बुद्धा जी--

किसी ने स्टायलिश लुक से फ्लोर सिलिंग इसकी बनाई हुई है और फ्लोर सिलिंग ऐसी बहुत कम घरों में देखने को मिलती है मगर ये तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होटल लग रहा है।

और यहाँ पर जो चेअर्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर चेअर्स भी लुक बहुतही अच्छा आ रहा है वुड चेअर्स का लुक आ रहा--

एक गंदा जैसा एरिया है यहां पर लोग बहोत कम आते हैं इसलिए यह पर आदमी लोग भी नहीं दिखाई दे रहे।

ये एक बहुत बड़ासा एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड की एक-एक तरफ तो--

एक बौत बहुत अजीब अजीब एक रोड बनी हुई ए-ए रेलिंग बनी हुई है इधर रोड जा रही है।

ओर आमने-सामने बहुत सारे बने हुए हैं और थोड़ी दूर आगे करके इसके बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है।

गार्डन जाते समय बच्चों की स्लाइड लग रही है जो स्लाइड येलो कलर की है वो स्लाइड बहुत प्यारी लग रही है।

एक टाइल टाइल पे कलर हो रहा है वो क्रीम कलर का कलर है और इसपे--

और इस पे चेयर टेबल बहुत अच्छी लग रही है और एक स्टूल --

और उनके ऊपर उनके सारे असिस्टेंट बैठे हुए हैं जो उनकी सारी हेल्प करते हैं उनके हेल्पर हैं।

ये एक बहुत बड़ा एक छोटासा घर लग रहा है घर के अंदर बहुत सारी ले--

लेडीज खड़ी हुई हैं उसके आगे एक आदमी खड़ा हुआ है आदमी ने लेडिज लेडिज ने आदमी के सर के ऊपर एक--

और अभी भी कोई एक लेडी डांस कर रही है और बहुत सारे शो बहुत सारे लोग ऑडियंस देख रही हैं इनको डांस करते हुए।

रेस्टोरेंट की वॉल पे बहुत अच्छी-अच्छी ए पेंटिंग बनी हुई है एक रेस्टोरेंट की---

वाल में पेंटिंग में बना हुआ है एक शेफ बना हुआ है और एक पेंटिंग की वाल में बटरफ्लाई बनी हुई है और इसमें एक फैन लगा हुआ है और इसके ऊपर सबसे ऊपर वाल पेपर बना हुआ है बहत अच्छा लग रहा है और आई थिंक की प्लेट पे बिर्यानी पड़ी हुई है।

ये एक बहुत बड़ासा एक कोई अ गर्वनमेंट सरकारी--

मॉडल कुछ ऐसी गोल्फ सेंटर खुला हुआ है ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और इसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं।

बड़ी सी कोई कार खड़ी हुई है दोनों कार का कलर व्हाइट है दोनों टायर का कलर ब्लैक कलर --

और एक छोटा-सा एक रिसेप्शन बना हुआ है जो रिसेप्शन के पास भी एक सोफा पड़ा हुआ है।

वन प्लस प्लस के मोबाईल के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं वन प्लस के मोबाईल बहुत है स्लिम ---

और बहुत अच्छी होती है और इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा देता है और प्लस ये बहुत बड़ी मॉडल कंपनी है।

ये एक आई थिंक बहुत बड़ा-बहुत अच्छे-बहुत अच्छे मॉल का फ्लोर लग रहा है ये फ्लोर पे शायनिंग टाइल इती शायनिंग टाइल लगी हुई है।

अभी सामने लिखा हुआ है पी_वी_ई पूरा कम्प्लीट नहीं लिखा हुआ।

ऑल्टो कार खड़ी हुई है जो ग्रे कलर की कार है और एक दूसरी कार खड़ी है जो एग्झॅक्ट पता नहीं चल रहा क्या कलर है वह उसका थोड़ा लाइट ग्रे कलर है।

ये एक काली माता की एक बहुत बड़ी झाँकी निकल रही है और काली माता के बहुत सारे हाथ दिखा रहे हैं अलग ही---

और जय काली माता जा जय काली माता की जय जय काली माता की बहुत अच्छी झाँकी इसका लुक आ रहा है।

एक शेल-शेल्टर बना हुआ है जिससे लोग यहाँ पर आकर जिनको धूप ना लगे वो उसमें जाके खड़े हो सकते हैं।

और इसके नीचे का फ्लोर बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पे गमलें बहुत सारे पड़े हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ासा गार्डन लग रहा है ये चण्डीगढ़ का बहुत बड़ा सा गार्डन जहाँ पर किसी चीज का एग्जाम हो रहा हैं।

बस आ रही है और एक लेडिस बैठी हुई है वो अपनी बुक खोलके बैठी हुई है और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।